और बोट पर दो झंडे भी लगे हुए हैं और वोट में भी आदमी खड़े हैं।

और इसमें एक डंपी भी लगी हुई है और उसमें सीटियां भी दिखाई दे रही है।

जिसमें हरे भरे पेड़ पौधे है और छोटे पौधे भी है कुछ और इसमें एक --

और हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक वेदना च्यवनप्राश स्पेशल की दुकान दिख रही है।

और वहां पर पर्ची देने वाली खिड़की पर भीड़ भी लगी हुई है।

और मोटरसाइकिल भी खड़ी है।

और ये गेट खुला है और उस गेट के पास एक --

और तीन आदमी भी खड़े हैं।